यहां से मैं देख सकता हूं यहां पे रेलिंग दिख रही है। यह ख़म्बे दिख रहे हैं कुछ फोटो देख रहे हैं।

यहाँ पे कुछ बनाना चाहते हैं बिरयानी की तरह लगता है ये कुछ भी।

यहाँ पे हमारे लाने यह टपरेरिया दिख रही है एको लगा हुआ है यहाँ पे कोई बेचारे गरीब काम करता है या चाय की हो या कुछु की भी हो।

आइए आप लोगों के लिए दिखाते हैं इसके अंदर क्या-क्या है पंखा लगा हुआ है एक।

यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे जीने हैं ये घड़ी है ये सामान है कुछ भी देख सकते हैं।

आप यहाँ पे यहाँ घूमने आ सकते हो यह भाइयों यह कौन सी जगह है आपके लिए भोपाल की जगह लग रही है यहाँ पे मतलब जैसा चाहो वैसा घूम सकते हो आप।

यहाँ पे भाई आपके लिए जैसे कि बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे कुछ इंजीनियर काम कर रहे हैं कुछ मजदूर भी हैं भाई।

वगैरह वगैरह सामान मिल सकता है आपके लिए दुकान पे आना है।

आप के लिए यहाँ पे ये घर दिख रहा है ये कार है।

सेन है सेन मींस पंखा है यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं सब लोगों के हाथ डला हुआ है।

यहाँ पे गमला खड़ा हुआ है यह गमला रखे हुए हैं चार-चार यहाँ पे कुछ सामान है ये आंटी बैठी हुई हैं ये दीदी बैठी हुई हैं ये अंकल बैठे हुए हैं।

सब लोग काम कर रहे हैं दागाड़ी में भर भर के आप खाद डाल रहे हैं यहाँ पे आमों के पेड़ों में खाद दिया जा रहा है।

आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे आप गेम का सामान कुछ भी ले सकते हो गेम खेल सकते हो यहाँ पे--

भाइयों आपके लिए यह स्कूल दिख रहा होगा जैसे कि विद्यालय है यहाँ पे सर खड़े हुए हैं यहाँ पे दो बच्चे हैं यहाँ पे खड़े कि ये बोट लगा हुआ है।

ये भोपाल की सबसे फेमस बड़ी दुकान है यहाँ पे आपके लिए जो चाहिए वो मिल सकता है जैसे आप घूम सकते हो यहाँ पे आपके लिए जो कुछ चाहिए वो मिलेगा गाइस ।

जैसे कि आप देख सकते है यहां पे अंकल खड़े हुए है ये अंटी है यहां पे --

यहाँ पे आपके लिए ये दिख रही है यहाँ पे सामान मिलता है जो कुछ चाहिए जैसे कि आपके लिए बॉक्स दिख रहा है जैसे यहाँ पे शटल लगी हुई हैं।

ये देख सकते हो कि आप सब लोगों के लिए--

ये स्वीमिंग कूल दिख रहा है आप आइए यहाँ पे नहा सकते हैं ये फार्म हाउस है।

यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ लोग हैं यहाँ पे कुछ कर रहे हुए हैं कुछ फोटो खींच रहे हैं कुछ वीडियो बना रहे हैं।

आप लोगों के लिए जैसा दिख रहा होगा मतलब कि यहाँ पे कुछ हाथी हैं कुछ सामान हैं।